यहाँ पे मुझे मकान दिखाई दे रहा है जहाँ खिड़कियाँ हैं गेट्स हैं रेलिंगस हैं ब्लैक कलर की --

ये एयरपोर्ट है जहाँ ट्रॉलिस दिख रही है कुछ लोग दिख रहे है कार दिख रहा है डस्ट्बिन दिख रहा है शेड दिख रहा है।

पेजेज दिख रहे हैं टॉफी के बोक्सेस दिख रहे हैं कुछ झोले दिख रहे हैं मेगजीन्स दिख रही हैं बैडमिंटनस दिख रहे हैं।